यह भाषण बहुत ही अच्छे से दे रहे है । यह स्टेज बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है । यह देखने में सुंदर और बड़ा है। इसे देखने लोग कई दूर-दूर से आए हैं।

यह एक बहुत ही अच्छा गाड़ी है | यह गाड़ी दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढियां है। इस गाड़ी को देखने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं ।